पेंटिंग के नीचे एक बोर्ड है इलेक्ट्रिक ।

पीछे एक वाइट कलर का तंबू लगा हुआ है जिसमें नीचे बहोत सारी टेबल्स रखी हुई हैं।

और सामने एक लड़की खड़ी हुई है जिसने ब्लू कलर का सिलवार और ग्रीन कलर का कुर्ता पहना हुआ है।

कमरे का गेट ब्लैक कलर का है।

बगल में एक वाइट कलर की शर्ट पहने हुए लड़का खड़ा हुआ है।

और बगल में बहुत सारे पोस्टर भी लगे हुए हैं।

सामने एक येलो कलर का बड़ा सा बॉक्स रखा हुआ है।

कुछ बिल्डिंग दिखाई दे रही है और उनके सामने लगे हुए बोर्ड भी दिखाई दे रहे हैं।

सामने एक लड़का है जो सेल्फी ले रहा है।

इस कमरे में सामने जाली के बंडल्स बनाए कर रखे हुए है।

और इस साइड बराबर में कुछ कट्टे रखे हुए हैं बेकार।